इस इमेज में सामने खूबसूरत सा बंगला दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ शो प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे यहां पर एक गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ कार खड़ी नज़र आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ कपड़े टंगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे यहाँ पर कुछ दुकाने दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोग शॉपिंग करते दिख रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक शोकेस दिखाई दे रहा है अंदर कुछ दवाइयां रखी नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने एक स्टेशनरी दिखाई दे रही है और कुछ लोग नीचे खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ झूले नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहाँ पर एक टॉय शाॅप दिखाई दे रही है ऊपर बोर्ड पे आओ बच्चों के टोय लिखा है।

इस इमेज में यहां पर शादी का गेट दिखाई दे रहा है और लाइटें जलती नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ कपड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर कुछ डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में हमें धर्मशाला दिखाई दे रहे है जहां पर मंदिर श्री नरशिव जी लिखा हुआ है।

इस इमेज में हमें यहां पर एक छत दिखाई दे रही है और कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में हमें यहां पे कैफे दिखाई दे रहा है सामने एक लड़का खड़ा नजर आ रहा है।

इस इमेज में हमे यहां पर एक बस खड़ी दिखाई दे रही हैं सामने एक व्यक्ती खड़ा नजर आ रहा हैं।

इस इमेज मे हम एक लड़की दिखाई दे रही है जो स्टेज पे डांस करते नजर आ रही है।

इस इमेज में हमें कमरा दिखाई दे रहा है सामने टेबल कुर्सी रखे नजर आ रहे है।

इस इमेज में हमें बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं साइड में कुछ कुर्सियां नजर आ रही हैं।

इस इमेज में हमें पार्क दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है बाहर एक लड़की खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं ऊपर मेट्रो पुल नज़र आ रहा है।

इस इमेज में हमें इमारत दिखाई दे रही है और बोर्ड पे सैनिक एकेडमी लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है सामने यहां पर सीढ़ी पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में हमें कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ मूर्तियां रखी नजर आ रही है।

इस इमेज में हमें शॉप कॉफ़ी शॉप दिखाई दे रहा है और बाहर एक कार खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में हमें मैदान दिखाई दे रहा है और आसमान में बादल नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में हमें टेंट दिखाई दे रहे हैं और नीचे सोफे रखे नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में हमें यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर पार्क दिखाई दे रहा है साइड में एक कार खड़ी नजर आ रही है।